यह एक पुरानी बिल्डिंग है या फिर इसको हम किला भी बोल सकते हैं जिसके ऊपर एक स्तंभ बना हुआ है और--

यह एक पार्क जैसा खुला मैदान है जहाँ पर की छोटी-छोटी झाड़ियों को बहुत अच्छी तरह से फूलो को सजा रखा है।

में एक सूअर का बच्चा घूम रहा है और पीछे एक दीवार दिखाई दे रही है या तो वह घर भी हो सकता है या फिर कुछ और चीज।

यह एक बहुत बड़ी खुली जगह है जिसपर की छत है नीचे मार्बल और टाइल बिछाई गई हैं और बीचों बीच एक एलईडी टीवी भी लगा हुआ है।

यह एक स्कूल है और स्कूल की जो बीच वाली बिल्डिंग है। वो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है और इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं।

यह सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति है जो यहां पर स्थित है और इसको चारों तरफ से ढका गया है ताकि इसको कोई भी --

यह एक खुला रेतिला मैदान है। जिसके बीचो-बीच काफी सारे लोहै के स्तंभ --